खेतो मे पानि अवशयक है जमीन को पानी मिलना बहुत हि जरूरी है इस पानी से हि जीवन होता है और पनि हर--

इस ग्राउन्ड मे ह-ह बच्चे खेलते है यहाँ पर सब घूम सकते है।

यहा पास जंगल एरिया है और यहा बड़े-बड़े पतले-पतले पेड लगे हुवे है उनमे छोटी-छोटी पत्तिया लगी हुई है और यहा हरे-हरे घास छोटे-छोटे नीचे से लगी हुई हैं।

पेड बहुत ही लंबे और बड़े दिखाई दे रहे है और यहा से सूरज की रोशनी बढ़ रही है।